यह नूडल्स है जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं यह नूडल्स इतने भी अच्छे लगते हैं।

एक रोड है जिसके किनारे पर एक टावर लगा हुआ हैं एंड टावर पर एक वाच लगी हुआ हैं बगल में पेड़-पौधे लगे हुए हैंव घर बने हुए रोड पर से बहुत सारे साधन जा रहे हैं।